इस पिक्चर में सामने की तरफ हमें एक--

बोरिया रखे हुए हैं एक साइकल भी बनी हुई है।

बी के एस कॉलेज बना है।

जिसे बहोत सारे गांव के लोग देख रहे हैं।